पोशाक पड़ा हुआ है और जो डॉक्टर है उनको ग्लव्स पहन रहे हैं। मास्क पहन रहे हैं। चश्मा लगा रहे हैं और उनके हाथ में सीज़र है।

और जैसे में देख पा रहा हूँ वहाँ पे लोग परचेस भी कर रहे हैं।

गाड़ी भी नजर आ रही है और साथ में हरा सा पेड़ भी दि --

अभी में देख पा रहा हूँ एक वाटिका बहोत सुंदर लग रही है।